पेड़ के पत्तियों का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग स्टेज में चढ़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ मैदान में दिखाई दे रहे है कुछ सीढियां भी दिखाई दे रही है चारों तरफ लाइटिंग दिखाई दे रही है पेड़ दिख रहे है पेड़ के पत्ते भी हरा सफेद आसमान काला --

एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के दीवालों का रंग सफ़ेद दिख रहा है चारो तरफ नीला आसमान दिख रहा है नीले बादल छाए हुए है आसपास बिल्डिंग के सामने एक गार्डन दिख रहा है गार्डन के पत्तियों का रंग-

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग दो मंजिला दिख रही है दोनों सफ़ेद रंग की है चारो तरफ सफ़ेद रंग से भरे हुए घाँस का मैदान दिख रहा है।

मशीन दिख रही है मशीन का रंग पीला दिख रहा है काला दिखाई दे रहा है चारों तरफ मशीन का रंग हरा भी दिखाई दे रहा है दीवाल दिखाई दे रहा है देवालों का रंग सफ़ेद दिख रहा है काला दिख रहा है नीचे फर्श दिखा रहा है जोकि हरे रंग का दिखाई दे रहा हैं।

बहोत सारी मशीन ही मशीन रखी हुवी है चारो तरफ मशीन का वो डालने का सामना दिख रहा है।

चारो तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहै है बहोत सारे गाड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है नीला बादल छाए हुए है सफ़ेद बादल छाए हुए है नीला आसमान दिख रहा है चारो तरफ--

एक महिला दिखाई दे रही है महिला ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है लाल फूल टांगे हुए दिखाई दे रहै है एक खम्बा दिखाई दे रहा है खम्बे का रंग गुलाबी दिख रहा है नीले कलर का परदा दिखाई दे रहा है एक बैनर टंगा हुआ है बैनर में बहोत सारे चित्र बने हुए --

के आसपास जो पेड़ दिख रहा है पेड़ के पत्तियों का रंग हरा दिख रहा है सफ़ेद आसमान दिख रहा है चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है आसपास भी पत्थर ही पत्थर हैं।

आसपास बहोत सारी किताबे दिख रही है किताबो का रंग लाल नीला हरा नीला दिखाई दे रहा है चारो तरफ किताबे हि किताबे दिखाई दे रहै है आसपास भी किताबी ही दिख रही है।

चॉकलेटी कलर का दिखाई दे रहा है बहोत सारी गाड़ियां दिख रही है गाड़ियों का रंग काला दिख रहा है चारों तरफ रोड दिखाई दे रही है रोड में भी कुछ लोग गाड़ियां खडी हुई दिखाई दे रही है चारो तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है।

एक दीवाल दिख रही है बिल्डिंग दिख रही है दीवालों का रंग काला दिख रहा है खिड़कियों का रंग काला दिख रहा है आसपास भी बाउंड्री बनी हुई है जो भी काले रंग की दिख रही है उपर भी बहोत सारे बाउंड्री बॉल रखी गयी है।

स्प्रिंग की साइकिल मार्ट लिखा हुआ है एक ऑटो दिख रही है।

लोहो की रॉड दिखाई दे रहै है।

पेड़ के पत्तियों का रंग हरा दिख रहा है सफ़ेद आसमान से घिरा हुआ पहाड़ दिख रहा हैं।

गेट दिख रहा है गेट भी दिख रहा है हरे रंग का दिख रहा है गेट के उपर एक लोहै का रॉड लगे हुए है चारों तरफ पेड़ दिख रहै है पेड़ के पत्तियों का रंग हरा दिख रहा है नीला आसमान दिख रहा है एक आदमी दिख रहा है काले रंग की शर्ट और नीले जीन्स --

खंभों में लगा हुवा है सारे तरफ बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग की ईमारत दिख रही है ईमारत में बहोत सारे सफ़ेद रंग की दिख रही हैं।

कागज पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है चारों तरफ टिन दिखाई दे रही है लोहे की --

एक डब्बा बना हुआ है उसमे पानी रखा हुआ है एक आदमी दिख रहा है सफ़ेद रंग का उसने टी-शर्ट पहना हुआ है हाथ में मशीन पकडे हुए दिख रहा है एक आदमी बैठे हुआ दिख रहा है आदमी काले कपडे टांगे हुए दिख रहा है उसके काले बाल दिख रहे है दोनों के --

एक बहोत बड़ी नाँव दिख रही है नाँव का रंग नीला दिख रहा है सफ़ेद दिख रहा है चारो तरफ नाँव बनती हुई दिखाई दे रही है नीचे फर्श दिख रहा है लकड़िया पड़ी हुई दिखाई दे रही है आसपास--

सफ़ेद आसमान है चारो तरफ रोड दिख रही है रोड भी सफ़ेद रंग की दिख रही है रोड के सामने के बिच में एक बरामदा बना हुआ है बरामदे में बहोत सारे गमले दिख रहै है जो गहरे रंग के लाल रंग के दिखाई दे रहै है।

माने बाय बिजली के बायर दिख रहे है बहोत से झंडे दिखाई दे रहा है जो कि नारंगी रंग के है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है लड़के ने काले रंग का बनियान और काले रंग का पैंट पहना हुआ है चाय की बहुत सारे चित्र बने हुए दिखाई दे रहै है दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ सामान रखे हुए दिखाई दे रहै हैं।

ये मूर्ति बनी है मूर्ति का रंग काला दिखाई दे रहा है चारों तरफ मूर्तियों के एक बाल्टी दिख रही है बाल्टी में पानी रखा हुआ है नीचे काले रंग का फर्श दिख रहा है मूर्ति बनते हुए दिखाई दे रही है कपित लकड़ी की --